नीचे एक बड़ा सा मैदान है। बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाडी पे एक लड़का बैठा है और यहाँ रेलिंग लगी हुई है। एक दो लोग पे --

यहाँ बोहोत सारे लोग खड़े हैं। एक लड़का चश्मा लगाया हुआ है बोहोत तेजी से जा रहा है। एक लड़की भी खड़ी हुई है।

पिंक बॉक्स भी हैं। एक मेम है जो ब्लू कलर की साडी पेहने है। दो तीन खिड़कियाॅं भी हैं और एक खिड़की से बहुथी तेज रोशिनी आ र--

और तीन-चार ऑटो आ रहे हैं जा रहे हैं। बोहोत से लोग खड़े हैं। गत्ता रखा है। बैग रक्खा --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

नीचे बहोत सारी घासें हैं। एक खम्बा लाल कलर का है। एक खम्बा काला है। उसमें भी एक लाइट जल रही है वाइट कलर की।

अं एक लाइन से कुछ पड़े हुए हैं ईंटे और पीछे एक डब्बा --

सामने एक मेंम हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ग्राउंड में और खो-खो खेल रहे हैं।

और सब रक्खे हुए हैं और तार वार भी बहोत से है। एक घर भी है।

और एम.एस. वैशाली भी लिखा हुआ है और अन्दर काउंटर भी है बोर्ड भी है दो-तीन लोग भी हैं।

ऊपर छज्जा बना हुआ है मूर्ती के और पीछे दवाल --

सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। एक लड़की हाथ में ग्लव्स पेहेन के बॉल कैच कर रही है। एक लोग बैटिंग कर रहे है पूरा सब ग्लव लब लगाके।

सामने एक अंकल मछली बेच रहे हैं। बहोत बड़ी-बड़ी मछली हैं। एक आधी मछली भी है।